नमस्ते ये बहूत ही प्यारा किस्म का रोड है और रोड के दायें जाने पर गाड़िया पार्क की गयी है।

अब ये बहुत ही सुन्दर लग रहे है नागरिक यहाँ आने पर अब ये और ही खूबसूरत दिखाई देते है नागारिक के यहां पर--

नमस्ते धन्यवाद ये कोई ऑफिस टाइप है ऑफिस में एक नागरिक खड़ा हुआ है।

चौक के सामने बिल्कुल रोड है रोड के साथ बहुत घना पेड़ है पेड़ पर बहुत अच्छा घास लगा हुआ है पेड़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर है।

नमस्ते ये एक ऑफिस है ऑफिस के बाहेर कुछ नागरिक जो है बेठे इंतजार कर रहे है।

नमस्ते धन्यवाद यहां देखा जा सकता है। ]

अ अ ये एक दो बंदे खड़े है ठीक है ये शॉप पे खड़े है ये सामान ले रहे है सामान लेकर फिर इन्होंने खाना है --